लाल से हो करिया से फिर वह सामने बहुत बड़ा गेट बाटे शीशा वाला गेट --

ई-रिक्शा खड़ा बाटे बाटे और दूसरका तनी मनी लौकताटे। एगो लाल रंग क बाटे।

बहुत सुंदर से पेंट (paint) बाटे फिर चारो ओर इ पेड़ पोधा बाटे एगो आदमी गेट पर खड़ा बारन।

कॉलेज बा। बहुत बड़ा बाटे और लाल रंग से रंगल बाटे। बीच-बीच में उजर भी बाटे रंगल फिर से चार बहुत बड़ा फील्ड बाटे।